की गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जिसमे कई सारी अलग-अलग प्रकार की इस शोरूम में लाइट्स एवं प्रोडक्ट रखे हुए हैं और कई सारे रंगो की --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक घर दीखाई दे रहा है यह घर बहोत ही बरा है एवं सुंदर दीखाई दे रहा है बिलकुल हॉटेल जेसा इस --

कई साडी स्टील की कुर्सियां लगाई गई है जिसमे कुछ लोग इसके आसपास बैठे हुये दीखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक लोहे की टावर है यह लोहे की टावर बहुत ही बड़ी है और इसकी लंबाई भी बहुत है।

मास्क भी पहने हुए हैं और इनके पास में एक महिला टीचर खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो सभी को निगरानी कर रही है और इनके आस-पास भी छोटे-छोटे कई --

इसमें एक लाइट जल रही है जो सफेद रंग की है एक कम्प्युटर भी है और उसके नीचे एक लॅपटॉप है काउंटर के पास में एक काले रंग की कुदसियां लगाई गई हैं ।

और यह ब्रिज बहौत ही लम्बा है बहौत ही चौड़ा दिखाई दे रहा है ब्रिज बिलकुल नई बनी हुई है और ब्रिज के आस-पास पिले रंग से इसे घेरा गया है।